यह हरे भरे बाहरी दृश्य को प्रस्तुति दे रहा है।

यह एक किराने की दुकान या सुपरमार्केट की तस्वीर है।

इमारत के आस पास हरी भरी झाड़ी दिखाई दे रही है।

यह एक इमारत की तस्वीर है जिसके सामने एक बड़ा नीला बोर्ड लगा है।

इस धार्मिक स्थान के प्रवेश द्वार को अच्छे तरीके से सजाया गया है।

इसमें कई अलमारीयों पर विभिन्न प्रकार के पैक किए गए खाद्य पदार्थ रखे हुए --

कुछ अलमारीयों में पीले रंग के पैक है जबकि अन्य में नील और सफेद रंग की पैक दिखाई दे रही है कुछ वस्तु खुले भी है।

और इस दुकान में अमूल का एक नीला रंग का कैरेट भी रखा गया है।

इसमें एक लंबी मेज है जिसके साथ दो कुर्सियां लगी है।

इसमें एक काले रंग का स्कूटर और उसके पीछे एक लाल मोटरसाइकल खड़ी हुई दिख रही है।

दुकान के अंदर केक और बेकरी उत्पादों को प्रदर्शित करने वाली कई अलमारियां और डिस्प्ले दिखाई दे रही है।

उसी के साथ साथ इस रूम मे दो कुर्सियां और एक मॉनिटर भी रखा गया है।

यह चूल्हे विभिन्न डिजाइनों और रंगों में उपलब्ध है।

जिनमें काले ग्रे और भूरे रंग के सेट्स प्रमुख है।

जिसमें एक रस्ता और एक मेहराबदार प्रवेश द्वार की ओर जाता है।

मशीन के एक हिस्से में एक काला मोटा फिल्टर जैसा कुछ लगा हुआ है।

और बाईं ओर एक सफेद रंग का बॉक्स जैसा उपकरण दिखाई दे रहा है।

और उसी के सामने एक सीढ़ी हमें दिखाई दे रही है।

इमारत के ऊपर जनक स्वीट मार्ट करके लिखा गया है।

यह तस्वीर हमें एक इंडस्ट्रीज की दिखाई दे रही है।

दुकान की बोर्ड पर उसके मालिक प्रकाश भाई और उनका नंबर लिखा गया है।

रास्ते के किनारे कुछ पेड़ पौधे और झाड़ियां भी दिखाई दे रही है।

नीले आकाश और सफेद बादल भी इस तस्वीर में हमें दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में हमें एक दो मंजिला घर दिखाई दे रहा है।